यहाँ ये राजेंद्र उद्यान है मेन गेट लगा हुआ है अंदर बहुत सुंदर लग रहा है बहुत बड़े-बड़े पेड़ दिख रहे हैं।

बहुत बड़ा ग्राउन्ड है ग्राउन्ड मे बहुत सारे लोग दिख रहे है दो कहीं एक कहीं चार कहीं और वे इधर-उधर जा रहे है।

कुछ आ रहे हैं कुछ जा रहे हैं उधर से एक बस आ रही है रोड पर और एक मंजर --

कुछ पहले से चल रहे हैं उधर पेड़ हैं बहोत सुंदर सा लग रहा है बहोत --

स्टेज बना हुआ हैं स्टेज पर कुर्सी रखी हुई है बहुत सुंदर लग रहा है।

यह बहूत बड़ा ग्राउंड दिख रहा है और बहुत सारे पेड़ भी दिख रहें हैं। पेड़ों के में वाइट कलर के घर दिख रहें हैं।

बीच मे से जो पतला सा रोड है और एक बगल धुआं ही धुआं उड़ रहे हैं जिनमें छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए है।